लोहे की जाली लगी हुई है यहां पे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं गुलाब --

छतरी लगी हुई है जिसके ऊपर बहोत सारे झंडे लगे हुए हैं पास में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है कार भी दिख रही हुई है।

ये सब मे बहोत सारे डब्बे और रखे हुए है जिसके ऊपर चद्दर लगी हुई है यहां पे माइक भी रखा हुआ है दरी भी बिछी हुई है।

यहां पे तीन गेट लगे हुए है चैनल वाला गेट लगा हुआ है और सेंटर लगा हुआ है पास में एक दुकान है जो बंद पड़ी है यहां पे तीनों दुकानों में --

और इसमें केले और संतरे रखे हुए हैं पेड़ भी पास में बंधा हुआ है यहां पे बहुत लोग हैं जो अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हुए हैं।

और गोल्डन कलर की डिजाइन की गयी है यहां पे और यहां पे एक स्कूटी साइकल भी खड़ी है।

विंडो के छज्जे लगे हुए हैं और गेट हैं जहां पे छोटी सी बालकनी बनाई गई है।

एक्सरसाइज वाले झूले लगे हुए हैं यहां पे दूर दूर तक गांव दिखाई नहीं दे रही है जहां झूले लगे हुए हैं।

का मंदिर है यहां पे कबूतरों को चारा डाला जाता है यहां कबूतर गेहूं और चुग रहे हैं और यहां एक --

यहां पटरी बनी हुई है यहां से जा रही है पटरों से ट्रेन ।

और यहां पे एक कैरेट रखा है ब्लू कलर के दो और उसके पास कुरकुरे चिप्स और के अलमारी बनी हुई है।

यह एक फोटो ली गई है चौराहे की जहां आसपास बहुत सारे बिल्डिंग और घर बने हुए हैं कुछ दुकानें भी है यहां पे।

जालियां लगी हुई है खंभे लगे हुए हैं जिनमें विंडो की डिजाइन के अंदर येलो कलर से बना हुआ दिखाई गया है।

दो थालियां रखी हुई है जिसमें चंदन और है एक लड़का है जो यहां पूजा कर रहा है।